एक व्यक्ति एक महिला दुल्हन कुछ पहना रही है एक व्यक्ति खड़ा है एक बच्चा है जिसने दूल्हे के टोपी को पहन रखा है।

और ये व्यक्ति किरियो के बीच में खड़ा है जो सफेद किरी खींची हुई है के बीच में ये व्यक्ति खड़ा है।

सामने एक चित्र भी बना हुआ है एक व्यक्ति का लाइट भी रही है।

इस दुकान के अंदर एक ए_सी भी लगी हुई दिख रही है ऊपर की साइड ।

और लाइट लगी है कुछ लोग बैठकर देख रहे हैं।

एक टेंपो उसमें एक व्यक्ति पैर रखकर बाहर खड़ा है एक व्यक्ति अंदर बैठा है।

और यह सामान पन्नी में हैं कुछ बिना पन्नी के हैं।

यह एक बजरी बनाने वाला क्रेशर है इस क्रेशर में बजरी बनाने वाली मशीन लगी हुई है।

बहोत सारी किताबें बंधी हुई रखी हैं सामने एक पंखा है एक घड़ी है एक ट्यूबलाइट है।

यह एक रास्ता है रास्ते पर एक बाइक भी खड़ी हुई है।

और पेड़ों के बीच में भी मकान बने हुए हैं एक तरफ लोहे की ग्रील भी लगी हुई है यहां पर यो किनारा बना हुआ है।

इसकी छत में लाइट लगी हुई है एक सोफा पड़ा हुआ है सामने अलमारी में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

और कुर्सी की परछाई धूप से माध्यम से देख रही है जो धूप निकल रही है उसके कुर्सी की परछाई देख रही है।